इह एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप से भीतर बहुत आदमी खड़ा है और बाइक से पेट्रोल भर रहा है और पासमे एक रोड दिख रहा है और बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ भी हम देख रहा है।

पर बोहोत बड़ा एक नदी भी हम देख रहा है। नदी से ऊपर एक बोहोत बड़ा बोट भी हम देख रहा है। बोट का ऊपर बोहोत आदमी बैठा है।